सूरत लग रहा है। बोहोत ही अच्छा है ये ये ये जगह बोहोत अच्छा है देखने में ।

इधर दिखाई दे रहा है एक ट्रांसफार्मर इधर करंट वार्मिंग होता है।

ये एक दिख रहा है ये एक आदमी खड़ा है बुड़ा आदमी।

बुक में हाथ देकर कुछ कहना चाह रहा है।

इधर देख पा रहा है एक बड़ा सा घर है पुराना घर ।

इधर दिखाई दे रहे हैं बोहोत बड़ा एक --

बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में सिलेंडर को।

इधर देख पा रहे है एक बड़ा सा तीन फ्लोर का बिल्डिंग है जो इस बिल्डिंग का --

जिसमें क्रिश्चियन रहते थे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में।

जो फांक मैदान में है । ऊपर नील स्काई है ।

आदमी जो एक कार को रिपर रिपर कर रहा है ।

बालकोनी में ठाकुर है मंदिर में --

इधर घूमने के लिए भी पार्किंग करने के लिए भी आ सकते हैं।

दो पास में पानी है। दो पास --

इधर दिखाई दे रहा है एक दुकान में छोटा-छोटा बटर बर्ड्स है।